एक झूला है बहुत बड़ा हरी घास दिखाई दे रही है।

एक गाड़ी नजर आ रही है बहुत सारी गाड़ियें दिख रही हैं।

एक हरे कलर की रेलिंग बनी हुई है।

एक चोल टाइप की दिखाई दे रही है हरी नेट लगी है रेलिंग पर राइट साइड --

बहुत सारी खिड़कियां दिख रही हैं।

लोग कुछ लोग बाहर हाथ मे पन्नी लेकर जा रहे हैं।

एक बहुत बड़ा कांच दिखाई दे रहा है।

सामने एक अलमारी बनी हुई है उसमें बहुत सारे कपड़े जमे हुए हैं कुछ लोग खड़े हुए हैं।

उस पर बहुत सारी लाइटें लगी हुई हैं रंग बिरंगी लाइटें हैं।

इस पे इयररिंग्स बने हुए हैं ज्वेलरी के पोस्टर्स लगे हुए हैं।

एक काच का बहुत बड़ा दरवाजा दिखाई दे रहा है।

दो ऐसी ही छोटी सी दुकानें दिख रही हैं।

बहुत बड़ा सारा गोल गेट दिखाई दे रहा है।

आइट साइड एक घर दिखाई दे रहा है।

पहाड़ी कछुए का एक लोगो बना हुआ है।

बहुत सारी बोरियां रखी हुई हैं।

बहुत सारे लोग दिखाई दे रहे हैं।

लाइटें लगी हुई हैं ट्यूब लाइट लगी है।

जमीन दिखाई दे रही है बहुत सारे पेड़-पौधे लगे हुए हैं।